एक रेलवे स्टेशन की फोटो दिखाई दे रही है एक बंदा चल रहा है उस बंदे के हाथ में --

बाहर एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

एक रेलवे स्टेशन की फोटो दिखाई दे रही है।

रेड कलर का कुछ लेडिस दिखाई दे रही है।

एक बन्दी करनी को चलाते हुए की फोटो दिखाई दे रही है।

एक ब्लैक कलर का फ्रॉक दिखाई दे रही है।